यहां पर स्टेट बैंक ए_टी_एम भी है।

यहां पर एक कार खड़ी हुई है जमीन पर सफेद रंग का पाइप पड़ा हुआ है।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

यहां पर बहुत सारे गेंदे के फूल लगे हुए हैं।

यहां पर ट्रांसपोर्ट नगर लिखा हुआ एक बोर्ड है।

उस गढ्ढे में हरे रंग का पानी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बहोत बड़ी टेबल दिखाई दे रही है यहां पर पांच आदमी मौजूद हैं।

जमीन पर कालीन बिछाइ हुई है।

कुछ फूलों के पौधे लगे हैं जिनमें फूल हैं।